इसमें लाइट के खंबें दिख रहे हैं। पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इसमें आसमान दिख रहा है घास दिख रही है।

चीता दिख रहे हैं।